यह एक उद्यान है जहा पर पाँच व्यक्त पगडंडी का सहारा लेते हुए घूमने जा रहे हैं।

यह एक तालाब है तालाब के चारों तरफ पठार--

यह एक पार्क है जहाँ पर कई पौधे उगाए गए हैं | पार्क के बगल मे कई वृक्ष हैं ।

पार्क के बगल मे दो खंबे भी हैं ।

काले रंग के हैं।

झरने के बगल में कई पेड़-पौधे हैं जो हरे रंग के हैं।

पठार के बगल में चढ़ने के लिए सीढ़िया बनी हुई है | पठार पर कई पेड़-पौधे भी उगे हैं जो हरे रंग के हैं ।

यह एक क्लासरूम है | क्लासरूम में एक ब्लैक्बोर्ड है जिसमे टवेल्वेथ कॉमर्स लिखा हुआ है।

यह एक लड़की है जो नाच रही है यह लाल और काले रंग का कपड़ा पहने हुई है।